यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हुए है यहाँ पर एक स्कूटर खड़ी है और कुछ बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पे एक हॉल दिख रहा है जिसमे लाइट लगी हुई है यहाँ पर काउंटर बने हुए है और यहाँ पर रखी हुई कुछ चेयर दिख रही है।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर बाइक खड़ी हुई है और यहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।